यहां पीछे बहोत सारे पेड़ पौधे हैं और एक टेबल है कुर्सी है।

यहां चारों तरफ हरियाली है।

जो कैनरा बैंक में जा रही है।

यहां बहोत सारी लड़कियां है एक रंगोली है।

बड़े बड़े घर है खुला नीला आसमान है।

यह एक पारक है जिसमें--

बहोत सारी कुर्सियां है। बड़ा सा टेबल है।

गुलाब का फूल है बहोत सारी घास है।

इन पर विराजमान हैं यहां पर बहोत सारे गुब्बारे हैं बड़ा सा --